सभी लोग है आजू बाजू पीला पर्दा मारे हुए और यहां पे बड़े बड़े झाड़ भी दिख रहे हैं और आजू बाजू--

बाजू बा है जाली भी खींची गई है और ऊपर टी शर्ट भी है।

आदमी भी जा रहा है नीचे टाइल बिछाए गए है आजू बाजू खिड़कियां है।

और गाड़ियां भी पार्क्ड हैं और यहां पे और--

और यहां पे एक अदमी वाइट टी शर्ट चश्मा कैप पहना हुआ फतरी के ऊपर बैठा है यहां पे बहोत सारी मछलियां--

ये यहां पे शेल्फ में फुटबॉल बास्केटबॉल थ्रोबॉल और बास्केटबॉल रखा हुआ है यहां पे कपड़े भी हैं शेल्फ में।

यहां पे टीन शेड मारा गया है आजू बाजू पीने के लिए पानी की सुविधायें बनाई गई है आजू बाजू--

ये एक हाईवे रोड दिख रही हैं और यहां पे डिवाइडर भी हैं और यहां पे बहोत सारे साइकिल टू व्हीलर जोकि रहे--

बहोत सारे झाडा भी है लाइटिंग्स भी है आजू बाजू पर्दे मारे गए पिंक कलर के और यहां पे स्टेज भी है नीचे मट्टी है।

और बाहर मैट ग्रीन कलर यहां पे बहुत सारी पब्लिक है बाहर पार्किंग

ये एक अह फुड बाजार है यहां पे बहोत सारे कलर के फुग्गे लगाए गए रेड येलो ब्लू डार्क ब्लू --

यहां पे बाहर गाड़ियां हैं और यह मराठी में लिखा हुआ है और इसका दरवाजा बंद है और नीचे टायर बिछाए गया है वॉल को--

और ये एक पार्क है और यहां पे बड़े बड़े पहाड़ है और अंडर ग्राउंड यहां पे गेट है।

यहां पे गाड़ी भी खड़ी हुई है और यहां पे बोर्ड भी है ऊपर आसमान भी दिख रहा है और यहां पे पूरा पहाड़ी एरिया इलाका दिख रहा है।

और आजू बाजू बड़े बड़े झाड़ा भी दिख रहे हैं बहुत सारे खिड़कियां हैं यहां पे ए_सी भी लगाए गए है और यहां पे बड़ा सा लाइट का खंभा भी दिख रहा है।

इसमें बहुत सारे फुगे भी लगाए हैं येलो ब्लू कलर के और यहां पे थ्री सेक्शन बनाए गए हैं पेट्रोल डीजल भरने के लिए गाड़ियों के लिए।

यह एक मछलीयन की दुकान है यहां पे झींगे खेखड़े सभी मिलते हैं यहां पे बड़े छोटे सभी मच्छियां हैं यहां पे--

ये औरत मच्छिया को तौल के कट कर रही है यहा पे काटे भी है बोटिया भी है कलर कलर के यहा पे नॉन मुस्लिम-मुस्लिम सभी लेडीज जेंटस सभी --

नंबरक लिख रहा हैं पेन के द्वारा और वो साइड पे बहोत सारे होटल हैं खुला लैट्रिन्स हैं लेफ्ट साइड में ऊपर स्टेप जा रहें हैं।